जिम है और जिम का फोटो है यहाँ पर दो लड़के बैठे हुए है एक लड़का पोस दे रहा है हाथ दिखा के और वो ब्लैक और वाइट लाइन वाली टी-शर्ट पहना हुआ है नीचे जमीन पर डंबल पड़े हुए है।

यह एक भगवान की मूर्ति बनी हुई है जो हाथ में बांसुरी पकड़े हुए है।

नाय की दूकान पे बहार उसके गेट पे बहुत जयादा फोटोस लगे हुए है लिखा हुआ है फ्रैंड्स ब्यूटी ब्लूम--

उधर दूसरी तरह बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं बहुत ज्यादा लाइट लगी हुई है एक लड़का ब्लू बैग पहना हुआ है।

वहां पर खड़े होकर काम कर रहे हैंकुछ लोग चेयर पे बैठे हुए हैं और यह हां गणेश जी की पेंटिंग भी लगी हुई है।

सामने से जिमें भी दिख रहा हैदो आदमी भी खड़े हुए है पार्किंग का भी बन हुआ हैऔर ऊपर एक खिड़की है खिड़की में से दो सफेद पर्दे दिख रहे है।